पूजा की तैयारी चल रही है यहाँ बहत से --

यहाँ एक बौध्य भगवान की मूर्ति नजर आ रही है।

नीचे एक फ्लोर ऊपर एक फ्लोर जिसमें हमें एक ऊपर के फ्लोर में जिम दिखाई दे रहा है एक फिटनेस जिम --

जो कि दो फ्लोर में बनी हुई है अलग-अलग फ्लोर में अलग-अलग --

पर्फॉर्म किये जा रहे है जहां निचे बहत से लोग चेयर मे बैठे --

में गाड़ी दिखाई दे रही है। गाड़ी को बहुत ही अच्छे तरीके से फूलों की सहायता से सजाया गया है। यहां बहुत से लोग नजर आ रहे हैं।

यहाँ हमें एक बहत बड़ा खाली पार्क --

जो कि अपने पैसे विथड्रॉ करने ए.टी.एम. के अंदर जाते नजर आ रहे हैं ए.टी.एम. के दरवाजे को कांच से बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ सफेद कलर के बदक है जिनकी बड़ी-बड़ी चोचे होती है।

कांच से बनाया गया है और कॉलेज के बाहर हमे --

यहाँ हमें एक मंदिर का एंट्रेंस गेट दिखाई दे रहा है।

यहाँ हमे स्टेज पर कुछ लड़कियां नित्य करते नजर आ रही है जो की --

सीढ़ी से ऊपर जाने के रास्ता नजर आ रहा है।

और एक फिल्टर भी वाटर फिल्टर भी दिखाई दे रहा है।